कार भी पार्किंग की हुई है दो-तीन कार हैं काफी लोग भी है बाहर गाड़ियाँ भी खड़ी हुई है।

कैमरा भी है यहाँ पे फैन वगैरह लगे हुए हैं शो केस टाइप बना हुआ है का --

टेबल्स लगी हुई हैं बहोत सारी लोगों की गाड़ियां खड़ी हुई हैं काफी ज्यादा भीड़ है यहां पर।

काफी ज्यादा पार्यटक यहां पे घूमने के लिए आए पूरा इलाका बर्फ की चादर से ढका हुआ।

मंदिर के सामने काफी बड़ा पुराने टेन का पेड़ लगा हुआ --

और यहां आस पास पेड़ ही पेड़ है पेड़ पौधे छोटे छोटे पर ये पेड़--

वाइट लाइट्स लगी हुई है पूरा डेकोरेशन किया हुआ है माला से --

हाथ मुँह धो रहे हैं बा गाड़ियाँ खड़ी हुईं हैं बहुत सारी पेड़ पौधे लगे हुए --

बैठे यहाँ पे काफी ज्यादा लोग जो के साथ चल रहे हैं लेडीज भी काफी सारी है आर्मी की पुलिस भी यहाँ पे खड़ी हुई है।

यह एक काफी बड़ी शॉप यहाँ पे --

डिश टी_वी यहाँ पे वाशिंग मशीन्स रखी हुई है एक चॉकलेटी कलर की ब्लू कलर की --

यहाँ एक रेस्टोरेंट है जिसमें तिरंगे टाइप के बलून येलो ब्रेड ऑरेंज एंड वाइट कलर के बलून से डेकोरेशन किया हुआ --

हरी हरी छोटी-छोटी घाँसे हो रही है पत्तियाँ गिरी हुई है।

एक बच्चे खेल रहे हैं पेड़-पौधे एक भैया बाइसकल से जा रहे हैं छत के ऊपर तीन बच्चे हैं जो कि खेल रहे हैं।

कुमार बाग और यहाँ लाइट वगैरह लगी हुई है काफी लाइट्स से --

दृश्य दर्शाया गया है यहाँ पे बहुत खूबसूरत चार भागों में गार्डन टाइप बने हुए हैं हरी हरी हरियाली है आसपास --

यहाँ पर नमकीन बेकरी स्वीट्स चाट सब मिलते --

पे बहुत सारी वॉशिंग मशीन रखी हुई है अलग-अलग ब्रांड की काफी बड़ी-बड़ी वॉशिंग मशीन्स है।

घर बना हुआ है एक साइड शॉप है एक ही साइड दो पार्टीशन में यहाँ पे घर बने हुए हैं --